इसमें घरेलू सामान है जो की बेचने के लिए रखे-रखे हैं।

खिलाड़ी खेल रहें हैं ये सुबह का दृश्य है।

एक डेयरी के नाम से प्रसिद्ध है यह पटना में स्थित है।

पार्क में हैज लगा रखी है कुछ।

घास लगा रखी है यहाँ से शहर अच्छी तरह नजर आता है।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

इस बैंक के निचे स्वराज --

उस गाड़ी का नाम सैंट्रो है यह ब्लैक रंग की है।

इस दुकान का नाम तनिया कैलरी स्टोर है।

बना हुआ है इसके बाहर दो पेड़ हैं यह बहुत बड़े हैं।